ये दीवाली का ऑफर लगा हुआ है दूकान का रंग सफ़ेद है।

भोले बाबा के एक तरफ एक मकान बना हुआ है जिसमे --

फिटनेस जिम के नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे एम स केयर क्लिनिक लिखा हुआ है जो नीले रंग का है।

जिसमें सफ़ेद रंग की कुछ गाड़ी हैं एक गाड़ी लाल रंग की है।

लड़की के जूतों का रंग सफेद हैं लड़की के पीछे कुछ सामान भी नजर आ रहा है।

दुकान के चारों तरफ सफेद और संतरे रंग के --

एक बिल्डिंग है जिसकी सीढ़ियो पर --

यह एक कमरा है कमरे के दिवार का रंग क्रीम है।

कपड़े पहने हुए हैं बीच में उनका एक हेड बैठा हुआ है।

बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं झूलो पर लोग खेल रहे हैं।